अ थमसप की दो बॉटल रखी हुई है एक काँच का गिलास रखा हुआ है और एक लेडी का हाथ दिख रहा है।

कालपत्री लगा हुआ है और बहोत सारे फीस रखे हुए है घास के ऊपर और--

डेकोरेट किया हुआ है और चार आदमी दिख रहे हैं।

साइड में एक अ दो कपल के साइड में एक फोकस लाइट जल रही है।

बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और इस प्रेस वगैरह रखा हुआ है।

एकता का बड़ा सा एरिया है रूम है दो तीन विंडो दिख रहे हैं।

और बीच में अ कुछ कचड़े दिख रहे हैं पत्थर वगैरह दिख रहे हैं का अ नदी में और दूर साइड बड़े बड़े पेड़ पहाड़ दिख रहे हैं।

बाजू में कुछ ओड साइकिल खड़ी है।

सजा हुआ है नीचे ऊपर फ्लावर्स के राउंड में डिज़ाइन बने हुए है स्टेज को सजाया हुआ है बीच में गणपति जी का फोटो लगाया हुआ है।